और पहाड़ दिख रहा है जिसके --

और बद्दल बने हुए हैं।

सामने एक और रोड है सिर्फ पुट्ठी दिख रही है जिसका आधा कलर ऑरेंज और --

सामने शहर-- सामने शहर दिख रहा है जिसका कलर ब्लैकेन वाइट है जिसके --

कान्हा जी के सिर पे मुकुट लगा हुआ है जो सफ़ेद है कान्हा जी की मूर्ति भी सफ़ेद रंग की हाथ मे गोल्डन कलर की--

मुरली है और पीछे कुछु --

दिख रहा है| सामने सीढ़िया बनी है और दोनों साइड कुछ अ गमले रखे हुए है।

और सामने मैदान जिसमे पिली मिट्टी दिख रही है और साइड में कुछ पेड़ है।

कपड़े वाले त्यौहार आ रहे है।

और ऊपर अअअ ए बहुत से पेड़ दिखाई दे रहै है।

एक सफ़ेद तरह बिछा हुआ है।